वही पे हमे पीछे की तरफ दो-तीन गेट भी दिख रहे हैं वही हमें साइड पे एक भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो हमे एक ग्राम पंचायत की दिखाई दे रही है। वही पे हमे एक सिपाही अपने घोड़े के ऊपर खड़ा है। जिसका एक पैर उठा हुआ है।

इस फोटो में हमें ए बहोत सारे टूरिस्ट प्लेस में लोग घूमते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे एक आदमी ने सेल्फी ली है जिसमें हमें बोहोत से लोग दिखाई दे रहे।

लगी हैं। बोहोत से पीले रंग के गुब्बाड़े भी दिख रहे हैं। वहीं गमलो में बोहोत अलग-अलग फूल भी लगे हैं।

वहीं पे मस्जिद के गेट पर बहुत सारे गुब्बारे भी लगे हुए हैं। वहीं पर इस लड़के के गले में एक पीले रंग का दुपट्टा भी --